यहाँ पर बहुत ही सारे--

ये पूरा फ्लोर जो है वाइट कलर का है। यहाँ पर एक आ आदमी का हाथ दिख रहा है जिसने ऑरेंज शर्ट पहनी है।

उपर लोहे का एक शेड दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग हैं जोकि उसके आसपास बैठे हुए कागज के करके और टेबल पर जो है बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है। अलग-अलग बॉटल्स रखी हुई है।

यहाँ पर दो-तीन कार खड़ी हुई नजर आ रही है और नीचे का फर्श जो है वो ईंट वाला है। डिज़ाइन डली हुई है। और यहाँ पर पूरा शेड डला हुआ है लोहे का। और आसपास जो है बहुत सारी कुछ मशीनों जैसा रखा हुआ है यहाँ पे।

कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं और कुछ रॉड की ग्रिल नज़र आ रही है जिसे पोता गया है।